आसमान ब्लू और उजला कलर का है ।

एक आदमी उजला कलर का ह कपड़ा पहना हुआ है और उजले कलर की टोपी पहनी हुई है और एक आदमी लाल कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना है और उजला कलर का टोपी पहना हुआ है ।

अ अ अ और लोहे के तार से घेरा हुआ है और आसमान उजला दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे।

और पेट्रोल ढंग की गाड़ी दिखाई दे रही है अ एक --

इस तस्वीर में बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है और एक अ पुल दिखाई दे रहा है जो सीमेंटेड पुल है ।

इस तस्वीर में एक पहाड़ जैसा बत्थर पत्थर का बना हुआ है जिस पर की एक आदमी बैठा हुआ है।

एक और लेडीज दिखाई दे रही है ।

पिले कलर का है और ये लै इलेक्ट्रिकल झूला है जिसमें की बहुत सारे आदमी झूल रहे हैं और बहुत सारे पेड़ पु भी दिखाई दे रही है ।